उसमें सजाया है बहुत सारे गेट लगाया बहुत सुन्दर सा गेट लगाया है खिडक़ी लगाया है फोटो लगाया है।

सुंदर-सुंदर से सजाया झालर लगाकर सजाया है फूल गेंदा फूल सब अच्छा सा गेट भी लगाया है अच्छा।

एक दीवाल घरा है चारो तरफ-तरफ से दीवाल घेर दिया है अअ गेट सुन्दर सा बनाया है|

एक पेट्रोल पंप भी है और इधर घर भी है|

बहुत बड़ा पहाड़ है उस पहाड़ में अच्छा सा सुन्दर सा सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए|

सुन्दर सुन्दर बाई साइकिल --

इधर भी एक चम्मच लगा हुआ है ये नाश्ता का समान है कागजी है नींबू और--